और यहाँ पर लोहे की जा हेंगे और पर लोहे की सरी रखे हुए हेंगे बड़े बड़े से।

ऐ- रोड के दोनो साइड बहुत सारे पैड लगे हुए है और काफी सारे बैनर भी लगे हुए हैं बैनर बहुत बड़े बड़े से लगे हुए हेंगे दोनों साइड और बिल्डिंग्स बनी हुई--

ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस हेंगा और पहाड़ो पास आने के लिया यहाँ पर एक रोड गया हेंगा जो पहाड़ो के पास तक जाता हेंगा।

यहाँ पर एक घर बना हुआ हेंगा और यहाँ पर एक अगलबगल में मंदिर बना हुआ हेंगा।

यहाँ पर एक हॉल हेंगा जिसमे एक मूर्ति रखी हुई है और उसके आगे बहुत सारे लैम्प लगे हुए हेंगे और वहा पर सजाया हुआ है कुछ फूलो की माला टंगी हुयी है।

और यहाँ पर एक इंजीनियर हेगा जो व्हाइट कलर की कैप लगायी हुआ है और यहाँ पर जमीं में लोहे की रॉड रखी हुई हेंगी काफी सारे छोटे छोटे मकान बने है।

यहाँ पर एक स्टोर हेगा जिसमे बहुत सारे फ्लॉवर्स और पॉट रखे हुए है यहाँ अलग अलग तरह के पॉट रखे है।

ऊपर एक स्टेज हेंगा स्टेज बहुत बड़ा हेंगा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हेंगे स्टेज पर रेड और व्हाइट कलर की लाइट लगी हुयी है।